और हरे रंग की एक जाली लगी हुई है।

और बिजली के बड़े सारे खंबे लगे हैं।

भारत में काँच की खिड़कियाँ लगी हुई हैं।

और उसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं।

काफी गिलास और चम्मच रखे हैं।

जिसमें काफी रंगीन लाइटें जल रही हैं।

जो मिट्टी की जमीन पर रखी हैं।

जिसमें कुछ बच्चे बैठ के अपना काम कर रहे हैं।

लकड़ियों का एक घर बनाया है।

यह चित्र एक गार्डन का हैं जिसके पास में एक बड़ी इमारत बनी हैं।

ये एक आइसक्रीम की दुकान है।

और एक कार भी आती हुई दिख रही है।

कुछ बड़े-बड़े दरख्त भी हैं।

घर के नीचे एक कार खड़ी हुई है।

ये चित्र एक अस्पताल का है।

जहाँ पर एक बड़ा सारा ट्रक खड़ा है।

पेट्रोल पंप पर काफी लाइटें लगी हुई हैं।

उसके बाहर एक बड़ा सारा जनरेटर रखा है।